यहा पर दो कस्टमर्स खड़े हुए है जो एक दादाजी फोन पर बात कर रहे है और एक मास्क लगाये हुए है।

यह एक पहाड़ी है जो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है इस पहाड़ी पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे एव झड़िया लगी हुई है। यहा पर सुखी और हरी दोनों प्रकार के घास दिखाई दे रही है।

फूल गोबी भठे आल--

और यहा डॉक्टर और उनके साथ एक सहायक खड़े हुये है जो की डोक डॉक्टर के साथ कुत्ते का ओपेरेशन करने मे सहायता कर रहे है।

यह किसी पुराने महल का प्रवेश द्वार लगा है इसकी सामने जो सीढ़ियां दिखाई दे रही है उनकी चोड़ाई काफी ज्यादा लंबी है।

यह एक ब्याम ब्यायामसाला ओपन जीम है जहा पर बहुत सारे लोग जीम करने आ सकते है यह ओपन जीम होने के कारण काफी अच्छी है।

इस फोटो मे काफी बड़े-बड़े पेड़ नज़र आ रहे है कुछ नीचे बहुत भीड़ लगी हुई है एक टिन सेट हुआ है जिसके नीचे काफी सारे लोग खड़े हुए है कुछ सड़क पर आते जाते नज़र आ रहे है कही ठेला भी लगे हुए है।

ये फल बोहत अच्छे होते है सेहत के लिए इन्हे रोज एक फल खाना चाहिए।

यह एक नदी का दृश्य है और इसके किनारे पर काफी सारे पेड़ लगे हुए है ऊपर का आसमान भी साफ़ और खाली दिखाई दे रहा है।

ऐसे दृश्य शाम को काफी अच्छे दिखाई देते है यहाँ पर ठंडी-ठंडी हवा आएगी और यहाँ पानी भी साफ़ है।

यहाँ एक वैन खड़ी हुई नज़र आ रही है यह शायद किसी की पर्सनल वैन है इसको देखकर ऐसा लगता है इसका कलर कॉम्बिनेशन काफी अच्छा लग रहा है।

व्हाइट कलर के व्हॅन को काले और नारंगी कलर से पेंट किया गया है जिसके ऊपर परफेक्ट लिखा हुआ है।